प्रोग्राम के लिए यहां पे दर्शकों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई है यहां पे पिंक कलर का जो टेंट है।

दी गई तस्वीर जो है बिकानेर में स्थित एस_पी मेडिकल कॉलेज की हैं जहां पे मेडिकल छात्रों को बहोत अधिक--

विभिन्न विभिन्न प्रकार के पौधे है यहां सदाबहार पौधे और रंग बिरंगे फूलों के पौधे हमें दिखाई दे रहे है।

और अधिक कीमती लग रहा है यहां पे ए_सी भी है और यहां बैठने की भी उचित व्यवस्था की गई है।

और इन सामानों के रखने के लिए भी यहां उचित व्यवस्था की गई है जहां अधिक संख्या में समान उपस्थित है।

डेकोरेटेड और जो प्लांट्स है वो अ देवी देवताओं की तस्वीरे और बहुत --

जो है अच्छे अच्छे साड़ीयां उपलब्ध है और यहां डेली के विभिन्न ग्राहक आवा जावी करते हैं यह बहोत अच्छी दुकान --

प्रतीत होती है यहां पे कागज को मोड़कर काटकर--

बत्तख क्या करते पक्षी क्या करती आदमी की क्या करती शेर क्या करती खरगोश क्या करती दिखाई दे रही है जो बहुत ही --

यह आकृति देखने में बहुत ही अच्छे लग रही है इसको बनाने में सफेद लाल लाल और ऑरेंज कलर के फूलों का प्रयोग हुआ है।

कोका कोला थम्स अप भी दिखाई दे रही है और यहां पे ए_सी की भी व्यवस्था की गई है और लाइटिंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है।

बस के लेट होने पर अपने जो रेल का है इंतजार कर रहे हैं यहां पे सफाई अच्छी है।